इस इमेज में हमे एक मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है ऊपर मूर्तियां भी बनी हुई है जो ग्रीन कलर और पिंक कलर की है।

इस इमेज मे हमे सामने बहुत सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमें जिम दिखाई दे रही है जिम का कुछ समान भी रखा हुआ है और सभी लड़के --

ये इमेज एक सलून की है जिसमें रेड कलर की दो चेयर रखी हुई हैं एक लड़का बैठा हुआ है एक चेयर पर और दूसरा लड़का उसकी शेविंग कर रहा है।

इस इमेज में हम एक टेबल दिखाई दे रही है बीच में और अ आजू-बाजू बोहोत से कुर्सियां लगी हुई है जिस --

हां उम्म पर एक आदमी व्हाइट कलर का केप लगाए हुए दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ भी दिखाई दे रहीं हैं निचे बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं ऊपर रेलिंग बनी हुई है उसको पकड़ के दो आदमी खड़े हुए हैं जो निचे देख रहें हैं।

ए यहां पर हमे बहुत सारी लकड़ी और पिलर भी दिखाई दे रहे है और हमे सामने एक बहुत सारी मट्टी भी दिखाई दे रही है।